इस पिक्चर मे एक घर दिखाया गया है जो की काफी बड़ा घर है।

स्विमिंग पुल के पास ही थोड़ी दूर पर एक घर भी दिख रहा है।

ये एक घर है जिसके बाहर काफी सारी हरियाली दिख रही है।

मकान भी बने हुए नजर आ रहे है और एक लाइट का खंबा भी लगा हुआ दिख रहा है।

शॉप मे कुछ कॅरीबाग टाइपस् भी टंगे हुए दिख रहे है घर के ऊपर एक लाल कलर की टंकी भी लगी हुई दिख रही है।

और दीवारों पर भी लकड़ियों की डिजाइन बनी हुई है दीवार पर ऐ_सी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर मे काफी सारे मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे है।

आस पास काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए है नारियल के पेड़ भी काफी ज्यादा दिखाई दे रहे है और पेडो पर--

लाल और सफेद कलर का पेंट भी नीचे की तरफ करा हुआ दिखाई दे रहा है।

आस पास काफी सारे बड़े बड़े और कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।